मूर्तिओं के गले मैं माला दिख रही है मुकुट भी दिखाई दे रहा है और मंदिर मैं दो थाली राखी हुई है दोनों थाली मैं आरती राखी हुई दिख रही है।

इस तस्वीर में एक बोहोत बड़ा हॉल दिखाई दे रहा है हॉल में एक सोफा रखा हुआ है सोफा का कलर ब्लू है और टेबुल भी रखी हुई हैं।

इस तस्वीर में पानी दिखाई दे रहा है और एक लोहे का पिंजरा बना हुआ एं देखाई दे रहा है।

पंखा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर द अग्रवालस स्वीट रेस्टोरेंट लिखा हुआ है। मोटरसाइकिल भी दिख रही है।

दो बिल्डिंग दिखाई दे रही है आसमान दिख रहा है | बिल्डिंग की रेलिंग भी दिखाई दे रही --

इस तस्वीर में सामुदायिक शौचालय वर्ष दो हजार इक्कीस बाईस ग्राम पंचायत सुखदेवपुरा विकासखंड सदर जनपद गाजीपुर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

एक हाथ में गन रखे हुए हैं और एक हाथ में कंधे पर हल रखे हुए हैं ।

इस तस्वीर में बहुत सारी गाड़ियां दिखाई दे रही हैं। कुछ आदमी गाड़ियों के ऊपर बैठे हुए दिख रहे हैं। एक ऑटो रिक्शा दिखाई दे रहा है और स्ट्रीट लाइट जली हुई दिखाई दे रही हैं। सड़क दिखाई दे रही है। बिल्डिंग दिख रही हैं पेड़ दिख रहे हैं।